रात का फोटो है ऊपर लाइट लगी है।

खड़ी हुई है मालगाड़ी के साथ एक बहुत बड़ा ग्राउंड नजर आ रहा है।

फोटो दिखाई दे रही है और पार्क के बीचोबीच एक वाटर फाउंटेन --

और पोस्टर में दो औरत की फोटो ल दी हुई है मैं घर पर --

का काम कर रहे रिपेयरिंग का काम कर रहे --

प्लेइंग एक्टिविटी कर रहे हैं और अपने बच्चों क --

एक आदमी अपने बच्चों को म्यूजिक और संगीत कला की ट्रेनिंग दे रहे हैं।

रेलवे इस्टेशन जो है वो चार मंजिला है और बाहर बहुत सारी गाड़ी और --

उ प्लैटफ अ रेलवे पटरी नजर आ रहा है ऊपर एक ओवरब्रिज नजर आ रहा है दो से तीन ओवरब्रिज नजर आ रहा --

इस फोटो में एक नर्सरी दिखाई दे रही है नर्सरी में बहुत सारे पि छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।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

और कुछ डिस्कस कर रहे हैं और एक आदमी मोबाइल पे लेके सबकी वीडियो बना रहा है।